और पेड़ पौधे है एक पाइप लगा हुआ है पुतला ऊपर ऊँगली उठाया हुआ है ऊपर आसमान है नीचे पूल भी है।

दो- तीन ओरतें हाथ जोड़ी खड़ी हैं।

फली बैगन डलीया सब रखी हुई है और भी डलीया है ओर निचे रोड है।

नीचे का रस्ता है उसमे हलके कथई कलर का है गेट लगा है आस - पास पेड़ है।

यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिग है उसमे अलग-अगल फ्लोर बटे है।

यहाँ एक पहाड़ है जो ऊँचा निचा है ।

यहाँ बहतु बड़ा घना जंगल हे आसपास मिट्टी हे।

यहाँ बहुत बड़ा समुन्द्र है नीचे कचरा हे मिट्टी हे।

बोहत सारे पेड़ भी है और क कब्रे भी बनाई गई है ।

यहाँ इटों की दीवार खड़ी है जिसमें अलंगी भी है फर्सियाँ भी है।

यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है जिसके अंदर फिसल पट्टियाँ है एक अंकल बैठे है एक साइड पर एक साइड दूसरे साइड पर एक छोटी बच्ची हैं।

कोलगेट साबुन और बड़े डिब्बे में चॉकलेटस है।

ऊपर टेबल पर सॉस की बॉटल हैं।